यह नमो बुद्धाए की मूर्ति दिख रही हैं।

और इसमें एक टावर और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक महोत्वसव जैसा दिख रहा है।

और दो वा सफ़ेद कलर के छाते दिख रहे हैं ।

यह एक रूम दिख रहा है ।

यह एक स्विमिंग पुल दिख रहा है ।

कई व्यक्ति ई जा रहे हैं और ग्रीन लाइट --

जिसमें इस अम म जिसमें सरिया दिख रही है और इसमें --